और काफी पेड़ पौधे और काफी हरियाली भी दिखाई दे रही है।

कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे जिसके हाथों में कुछ बड़े बड़े फूल नजर आ रहे है और बड़ा सा मैदान भी हरियाला दिखाई दे रहा है।

ऐसा लग रहा है कोई होटल होना चाहिए और इस होटल के कलर का बात करें तो बहोत अच्छा वाइट कलर किया हुआ है।

सुमरा सा भी दिखाई दे रहा है इसके आस पास में कुछ डेकोरेशन बोहोत अच्छे दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इसके आस पास की बात करें तो मुझे कु --

इस तस्वीर में मुझे एक कुछ स्टेशन सा लग रहा है इसके आसपास की बात करें तो कुछ लड़के भी नजर आ रहे हैं और कुछ--

एक कट्टे भी नजर आ रहे हैं इसके आसपास की बात करें तो एक कुर्सी भी आ रही है कुछ तार भी लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ईंटे व रेलिंग नजर आ रही है सामने की बात करें तो एक बड़ी सी बिल्डिंग भी नजर आ रही है इसके आस पास की बात करें तो --

एक पेड़ भी नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है कोई पार्क होना सही है ये कुछ पत्थरों की कुर्सी भी नज़र --

इस तस्वीर में मुझे कुछ तकिए नजर आ रहे हैं।

इसकी तकियो की कलर की बात करें तो रेड कलर की कुछ तकियों कुछ खिलौने दिखाई दे रहे हैं।